सब लगा हुआ है पार्क के बगल में लगा हुआ है बच्चा सब है आप भी बच्चे थे हम भी बच्चे हैं।